और दो लोग दिखाई दे रहै है जिनमें से एक व्हाईट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और एक व्हाईट और ब्लैक में कुछ पहना हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है जिसमे कुछ रखा हुआ है जो एक ग्रीन कलर का है औ--

और आधा बेसिन दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है।